और एक लकड़ी की सीढ़ी भी है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है।

इस फोटो में एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

एक सफेद रंग की टेंपो भी खड़ी हुई है।

और बहोत सारे सफेद रंग के मकान भी हैं।

पीले रंग की प्लेट भी लगी हुई हैं।

लोहे की छत भी लगी हुई है।

एक लाल रंग की गाड़ी भी खड़ी हुई है।

बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी खड़े हैं।

इस फोटो में एक प्लास्टिक का बेड पड़ा हुआ है।

इस फोटो में दो बेड पड़े हुए हैं।

बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं।